एक गमला दिखाई पड़ रहा है जिसमें छोटा सा पौधा लगा हुआ--

आसपास काफी सारे जो है अ डब्बे रखे हुए--

प्लास्टिक के डिब्बे रखे हुए हैं कुछ पाइपें लटक रही हैं।